एक बडा सा मैदान है जिस मैदान में हरे घास जमा हुए है और कुछ बच्चे लोग दौड़ रहे है और खेल रहे है अगल बगल कार ही कार खड़ी हुई है।

जो आने जाने का रास्ता बना हुआ है कुछ लोग आ रहे है जा रहे है गाड़िया आ रही हे जा रही है अगल बगल गाड़िया खड़ी हुई है।

एक कोष कार्यालय है जो का कोष कार्यालय में काला सा गेट लगा हुआ है उसके मैदान है जिस मैदान में हरे घास जमे हुए हैं एक बड़ा सा टॉवर खड़ा हुआ है अगल-बगल हरे पेड़ पौधे हैं बादल सफेद है।

भैरव धाम राजगढ़ है जहाँ सामने एक बड़ा सा गेट बना हुआ है और अंदर जाने का रास्ता है।

केन्द्रीय विद्यालय स्कूल है जिस में काले कलर का गेट लगा हुआ है और छोटे-छोटे गेट अगल-बगल लगे हुए हैं।

और दीवारे बहुत उखड़े पुराने है और अंदर जिसमे एक गाय खड़ी हुई है सामने एक कार खड़ी हुई है आगल बगल पेड़ पौधे है बादल नीला और सफेद है।